इसमें एक चेयर भी लगी हुई दिखाई दे रही है और--

फोटो दिखाई दे रहा है इसके अंदर टेबल और मेज लगी हुई भी दिखाई दे रही है।

रो रोड पर व्हीकल चलते हुए दिखाई दे रही है।

इसमें एक पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल भी खड़ी दिखाई दे रही है।

और इसमें सामने लाइटे विभिन्न तरह की लाइट वाली रोशनी भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें विभिन्न तरह की दवाई रखी हुई दिखाई दे रही है।

इसमें एक इसमें लाइट लैंप भी दिखाई दे रहे हैं लाइट लैंप वाला खंभा भी दिखाई दे रहा है।

ये पूरी तरह डेकोरेट किया हुआ है।

यह किसी शादी की फोटो दिखाई दे रही है।

लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है।

यहां पर लोग बुक रख के रखकर बैठे हुए हैं।

इसमें लोग शूज की शॉपिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इसके बाद इसके बाद एक कूलर भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक इ एडवरटाइजिंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इसमें अह दो ए_सी भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस ये एक किसी बिल्डिंग फोटो दिखाई दे रहा है।

इसमें लोगों का आवागमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है।

बाइक सर्विस का फोटो दिखाई दे रहा है।